कहीं कहीं ऑरेंज कलर की भी दिखाई दे रही है।

इस सोसाइटी के बगल एक रास्ता जा रहा है जिस पे एक कार भी खड़ी हुई है।

रस्ते के बगल में एक और क्यारिया है जिसमें हरे भरे घास है।

यह एक पत्थर की बनी आकृति है।

बीच में एक रास्ता है रास्ते के अगल बगल ताड़ के पेड़ हैं।

यह ई रिक्शा है जिसके सामने दो लोग खड़े हुए हैं पुरुष महिला को चाबी देता--

सोफ़ा के सामने भी एक बैठने के लिए अ चेयर रखी गई है जिसपे की एक आदमी बैठा है।

घर का गेट भी फूलों से सजा हुआ है।

टेबल और कुर्सियां लगाई गई हैं।

सामने एक टेबल है जिसके ऊपर कुछ बर्तन रखे गए हैं सामने एक गाड़ी भी खड़ी है।

यह ईसाइयों के मिलने का सामूहिक स्थान है।

सरिया से इसे छाया गया है।

कुछ गाड़ियां ढकी हुई है और अगर बगल पेड़ पौधे भी लगाए गए है।

उसके सामने बॉर्बीज लिखा हुआ है।

बगल में कुछ बड़े पौधे और सामने कुछ छोटे पौधे हैं।

इसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है।

नदी का किनारा है जिसके किनारे पे कुछ नावे हैं।

किनारे पे ये जो कुछ दुकानें लगी हुई हैं इसके आसपास कुछ लोग खड़े हुए हैं।

रास्तों के अगल बगल फूलों की अह फुलवारी लगी है।

चारों तरफ से भी हरा भरा बड़े पेड़ लगे हुए हैं।